यहाँ पे भी बहुत सारी फ़िशेस है।

बोहोत सारे डंबल्स नीचे रखे हुए है अलग-अलग तरीके के एक-एक साइज़ के।